नदी का किनारा है। दसान नदी यहाँ पे लगी हुई है।

यहाँ पे बहुत ही अच्छी नजारा है पर यहाँ का रोड बहुत ही कंडीशन खराब है क्योंकि यहां पर एक तो मोरंग वगैरा खनन होता रहता है और यहाँ पर आप नहा भी सकते हैं।

सामने बहुत ही बढियाँ ग्राउंड पड़ा हुआ है। ये लड़का और लड़कियों का कम्बाइंड स्कूल है यहाँ पे यानि इंटरमीडिएट तक स्कूल है | यहाँ पर लड़का लड़कियां दोनों लोग साइड में कम्बाइन स्टडी करते हैं और लाइब्रेरी वगैरह भी है ।